आप देख सकते हैं घर दिखाई दे रहा है।

आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी चिड़िया का--

स्टेचू बना कर खड़ा किया गया है साइड में एक एलोवेरा का पौधा नजर आ रहा है।